एक मोबाइल पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और कई सारे पेन पड़े दिखाई दे रहे हैं कुछ पानी की बॉटल है।

और फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं एक केतली दिखाई दे रही है।

इस फोटो मी में बताया है कि यहां पे--

जंगल दिखाई दे रहां हैं और--

एक केतली दिखाई दे रहीं हैं हमें इधर।

इस फोटो में बताया है। यहां पे एक पार्क है। कई सारे पेड़-पौधे लगे हुए--

और यहां पे कुछ डस्टबिन पड़े हुए हैं और--

तुम्हें इस फोटो में बता--

कुछ हमें यहां पर मोटरसाइकिल और स्कूटी दिखाई दे रहें--

इस फोटो में बताया है यहां पर एक समुंदर हैं और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा हैं एक औरत ने बच्चों को उठाया हुआ--

और मंदिर के बाहर कई सारी सजावट की हुई है।

औरतने हाथों पैरों पे मेहंदी लगाई हैं साड़ी पहनी हैं सिर पे गजरा लगाया हैं।

और कई सारे यहां पे मिर्ची दिखाई दे रही--

इस फोटो में बताया है कि यहां पे--